यह दुकान है उस दुकान के अंदर में बॉटल में बहोत सारा समान रखे हुए है उसके ऊपर में कुछ लिखा हुआ है एम ए --

यह एक सड़क है सड़क के किनारे में बाइक से सब खड़े है और लोग बाइक चला कर जा रहे है ऑटो आती हुई नज़र आ रही है।